यह एक कॉपी किताबों की दुकान है | यहां पर पेंसिल कॉपी रबर पेन भी मिलते यहां पर फेविकोल भी मिलती है।

अलग-अलग साइज की रखे हुए यहां पर हर डिजाइन के हर कलर के।

यह एक फुटबॉल कॉम्पटीशन वाला फिल्ड काफी बड़ी सी ऊपर लाइट जल रही है एक आदमी दौड़ लगा रहा है| यहां पर ग्रिल लगी है इस पर हरी कलर का बॉर्डर --

पंखा बनाया गया है। स्टील के पंखें है। पीछे साइकिल भी खड़ी है। नीचे मट्टी भी काफी मट्टी पे बनी --

यह एक केक रखी हुई है फ्रिज में केक रखी हुई है इसमें आइसक्रीम भी रखी हुई है।

बच्चा अभी खड़ा हुआ है। एक आदमी भी खड़े हुएँ हैं। माला भी टंगे हुए हैं एटीम पर।

यहां बुद्ध बने हुए है। कहेकी मन्दिर है यहां पे तीन लोगों ने मोन्क काफी अच्छे लग रहे है यहां पे घूमने के लिए पर भी लगे हुए है घूमने के लिए पेड़ भी लगे हुए हैं काफी ऊंचे-ऊंचे पेड़ भी लगे हुए हैं यहां पर --

बढ़िया लुक दिया गया है। यहाँ पर लाल कलर का रेड ब्लैक का कॉन्बिनेशन भी बनाया गया है। आगे कांच भी लगा है। काफी सारी अंदर लाइट भी लगी।